इस फोटो मैं हमे बहोंत सारे फूल जो कि रंग बिरंगे हैं दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है यहां पे एक फादर है और साथ में एक सिस्टर है।

इस फोटो में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है।

एक पेड़ दिख रहा हैं और बादल दिखाई दे--

यहां पे हमें और भी बहुत सारा सामान रखा दि--

साथ मे हमें फोटो दिख रहीं हैं ना--

एक मंदिर दिख रहा है इस मंदिर के बाहर हमें --

यहां पे बहुत सारे जो दीपक हैं वो जलाए हुए हैं।

यहां पे इस लोहे का बहुत सारा सामान रखा हुआ--

इस फोटो में हमें एक कैफे दिख रहा है।

आसपास हमें कुछ चेयर्स दिख रहीं हैं।

हमें यहां से सूरज दिख रहा है। सूरज की बहुत सारी जो किरणें है वो पड़ रही है रोशनी है।

हमें और भी बहुत सारा सामान जो इस दुकान में है वो बड़ा दिख रहा है।